शेटर भी हमें दिखाई दे रहा है। मीटर लगा हुए दिखाई दे रहा है।

जाने का रास्ता भी हमें दिखाई दे रहा है। सामने भी हमें यहां पर बड़े-बड़े पेड़ --

और यहां पर औरतें हमें पूजा करते हुए दिखाई दे रही हैं।

लोगुन भी दिखाई दे रहे हैं। पेडुन दिखाई दे रहे हैं बड़े-बड़े।

यहाँ पर हमें सड़क एक पर फ्रू फूट कौनर की --

सामने यहां पर जाली का गेट भी बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें सामने एक बड़ा-सा हॉल दिखाई दे रहा है।

जहाँ पर चेयरें लगी हुई हैं। अ व्यक्ति उन भी दिखाई दे रहे हैं।

और सामने शॉपुन दिखाई दे रही है।

सामने और भी हमें यहाँ पर अट्टाला रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

जहाँ पर हरी-हरी घास हमें दिखाई दे रही है। पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं छोटे-छोटे।

और हमें यहाँ पे चैनल गेट भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हमें सामने सड़क दिखाई दे रही है और यहाँ पर हमें एक एक्टिवा खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

और यहाँ पर मतलब लोहे के चदर के छोटे-छोटे से टेंट हाउस बने हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसमे गेट भी हमे बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर हमे बड़े से सड़क दिखाई दे रही है और सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग हमें दिखाई दे रही है।

जहाँ पर हमें केक रखे हुए दिखाई दे रहे हैं अलग-अलग। एक केक हमें यहाँ पर येलो कलर का दिखाई दे रहा है उसमें --

आ पिंक और पर्पल कलर का फ़्लावर बना हुआ दिखाई दे रहा है।